ये एक मछली का बाजार है यहाँ पे कुछ लोग मछली को क्लीन कर रहे है।

ये एक एक्वेरियम है इस एक्वेरियम मे कुछ मटकी के हंडी--

ये ए कार गैरज है।

और बहुत सारे झूले डाले हुए है इन झूलों मे ब्लू नीले कलर ग्रीन हरे कलर और लाल कलर का झूला मौजूद है।

दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा मशीने काली है।

पौधे नजर आ रहे है और वो पौधे ग्रीन कलर के है और ये इमारत का कलर ग्रे कलर है।

कुछ लोग इन तबले बजाने वालों को देख रहे है और कुछ लोग बजा रहे है।

और लाइटे ऑन है।

इक्क्ठे हुए है आपस मे देख रहे है।